मुझे इस फोटो पर एक हॉस्पिटल के बाहर--

किताबों की दुकान नजर आ रही है।

बहोत ही बड़ी सी ग्राउंड नजर आ रही है।

जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे व हरी हरी घास--

तथा नदी के बाजू में घाट भी बने हुए हैं।

एक बोहोत ही बड़ी सी पत्थर की चट्टानें नजर आ रही है।

जिसमें बहुत सारा मेकअप का अलग अलग सामान भी--

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ीसी दवाइयों की दुकान--

जिसमें बहोत सी टेबले और साथ ही कुर्सियां भी रखी हुई है।

दुकान नजर आ रही है जिसका नाम सेंट्रल ऑटो मोबाइल्स है।

इस दुकान के बाहर बहोत सी गाड़िया खड़ी हुई है।

इस दुकान में कांच लगे हुए हैं।